और एक अ अंदर जाने के लिए रस्ता भी है यहां पे कुछ लोग खड़े हैं और कुछ लोग अंदर जा रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एको लोहे का जाला दिख रहा है जिसके अंदर एको शेर को बंद किया गया है।

हेलमेट्स और सामान रखा गया है।

इस तस्वीर में मुझे एक शोरूम नजर आ रहा है जहां बच्चों का समान रखा गया है।

दृश्य में मुझे एक शॉप नजर आ रही है।

आस पास मुझे सूरज की रोशनी भी पड़ती हुई नजर आ रही है अंदर बहुत सुंदर घास फूल पौधे पत्तियां लगा रखा है।

सिलेंडर लेंटर नज़र आ रहा हैं जहां पे लोहे के सरिए खड़े है और कुछ बिछे हुए है इनके बीच में सीपेंट गीला कर के भरा गया हैं।

किसके पास मुझे कुछ लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक नजर आ रहा है यहां पे लोहे की चेयर्स बिछी हुई--

जगह नजर आ रही हैं जहां पे बहोत सारी बोरियां रखी हुई है और दो लोग--